ये गरेय मछली बर विशाल है ये अपना सुर गराते है तो बोहोत लहरता है ये मछली --

वहां पे पे बॉडी बनाते है।